यहां सामने चर्च का पादरी खड़ा है।

इस चर्च में बहोत सारे पंखा लगे हुए हैं।

यह भवन बहोत ही सुंदर है।

यहां पे बहोत ही सुंदर सफेद रंग के सोफे लगे हुए हैं।

सफेद रंग के सोफे के पीछे बहुत सुंदर कुर्सीयां लगी हुई है।

चारों ओर बहोत सारे रोशनियों से सजावट की गई है।

इस परिवार में एक पुरुष एक महिला अभी तो चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

यह वाटर पार्क बहोत ही भव्य है।

यह एक वाहन सफाई केंद्र है।

यहां पे वाहनों की सफाई होती है।

यह स्कॉर्पियो सफेद रंग की है।

मिठाई की दुकान में अन्य अन्य प्रकार की मिठाइयां उपलब्ध है।

यहां पे कुछ लॉलीपॉप भी रखे हुए हैं।

यह एक कलाकृति की कक्षा है यहां कुल पांच बच्चे बैठे हुए हैं।

वह चलने में असमर्थ भी लग रहा है।

इस तस्वीर में एक पशु खाना दिख रहा है।

इस पशु खाने में कुल एक भैसी एवं एक उसका बच्चा है।

समारोह स्थल पर बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं।

समारोह स्थल पे काठ की कुर्सियां एवं सोफे लगे हुए है।

यहां एक पीले रंग का भवन है जिसमें कांच की खिड़कियां हैं।

यह गाड़ी भारतीय सरकारी गाड़ी है।

इस चित्र में एक शांत जलाशय दिखाई दे रहा है जिसके दोनों ओर हरे भरे वृक्ष हैं।

पानी की सतह पर हल्की लहरें हैं।

यह एक पुस्तक का भंडार है।

पुस्तक के भंडार मे कुल दो पंखे लगे हुए हैं।

पुस्तक के भंडार में एक घड़ी एवं एक कैमरा लगा हुआ है।

यहां पर छत की कार्य चल रही है।

बहोत सारे मजदूर एवं इंजीनियर्स इस कार्य में लगे हुए हैं।

यह चित्र एक मछली मंडी की है।

यहां पे मछली यहां बेची जाती है।

यह पे अन्य अन्य प्रकार की मछलियां उपलब्ध हैं।

यहां दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठा हुआ है।

यह चित्र एक पारंपारिक पर्व का है।

यहां पे बहुत साये महिलाएं पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना कर रही हैं।

एक पेड़ है हरे जो की हरा भरा है।

बच्चे अपनी अपनी कॉपियों पे चित्रकला का प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह चित्र एक बहुत ही सुंदर एवं अत्याधुनिक जिम केंद्र का है।

यह जिम केंद्र सभी तरह की सुविधाओं से लैस है।

यह चित्र एक नहर या डैम का है।

यहां पानी का स्तर बहुत ही कम है।

यहां पानी बहुत ही साफ है।